साथ ही उनके आगे कई माइक भी लगी हुई है और एक लोग बैठे है नीचे जिनके हाथ पर तबला है साइड में एक टेबल रखी हुई है जिस के ऊपर कपड़ा बिछा हुआ है और फूल भी लगी हुई है।

गिरजाघर है जिसका रंग सफ़ेद है जिसके ऊपर कई सारे लाइट और पंखे लगे हुए है साथ ही उसमे लाल रंग का पर्दा भी लगा हुआ है और एक घड़ी भी है।

एक बहोत लम्बी रोड बनी हुई है रोड के दाए तरफ बहोत ऊँची-ऊँची बिल्डिंग है जिसका रंग सफ़ेद और गुलाबी है साथ ही एक कार भी खड़ी है जिसका रंग सफ़ेद है उसके बाएं तरफ बहोत सारी पोलें लगी हुई है जिसमें से बहोत सारी तारें गई है।

साथ ही सामने बहुत सुंदर सोफे रखे हुए हैं जो की सफेद रंग के हैं और पीछे चैयर लगी हुई है जो कि सफेद कपड़ों से ढकी हुई है।

चित्र मे एक मंदिर है जो की बहोत बड़ी है जिसका हम सभ्यता सामने कई सारे सीढ़ियां बनी हुई है उसके बाएं साइड एक पेड़ लगी हुई है और एक घर भी बना हुआ है।

उसके दाएं तरफ एक घर है जो की बहुत बड़ा है जोकी बहुत बड़ा है जोकी सफेद और लाल रंग का है उसके सामने घास दी हुई हैं साथ ही कई प्रकार के पौधे भी रखे हुए है।

इस चित्र मे घर है जो की बहुत बड़ा है जिस का रंग सफेद है जिसमे कई सारी खिड़किया बनी हुई है साथ ही एक दरवाजा भी है उसके बाहर एक बाइक भी खड़ी है साथ ही दो साइकल भी खड़ी है।

साथ ही सामने एक रोड है जिसमें एक ठेला है उसके बगल मे एक घर है जो की बहुत बड़ा है।

उस गेट में एक आदमी खड़ा है साथ ही गेट के अन्दर एक टेबल पे एक लोग बैठे हुए है उसके बाहर एक बोर्ड लगी हुई है जो की काले रंग की है उसके बगल में एक बाइक रखी है और साथ एक लड़का भी खड़ा है ।

चित्र में घर है जो की लाल और सफेद रंग का है साथ ही इसमें कई सारी खिड़किया बनी हुई है। साथ ही इसमें ऐ_सी भी लगी हुई है ।

इस चित्र में दुकान है जो की सफेद रंग की है जैसे कि सामने कई प्रकार के शैंपू और चिप्प लटक रही है साथी एक टेबुल है जो की भूरे रंग का है जिसके ऊपर कई सारी डब्बियाँ रखी गई है।